यह एक शॉप है जहाँ पे बिजली के सामान बिकते हुए दिखाई दे रहे है बिजली के दुकानदार सामने अपने काउंटर पे बैठे हुए है एक ग्राहक है जिसको डील करने में व्यस्त --

अ यह एक घर का दृश्य है जैसे जो किसी कॉलोनी में बना हुआ है जिसे पीले कलर से रंगा हुआ है।

ये भी एक डॉक्टर का ही बोर्ड लग रहा हैं ये काफी बड़ा क्लीनिक दिखाय दे रहा हैं जो बाहर में एक पोल है बिजली का पोल है जिसके बगल में ये बोर्ड लगाया गया हैं।

यह किसी रेड लाइट का दृश्य हैं रेड लाइट के आगे शायद मार्केट हैं आ ग्रीन लाइट के आगे शायद कुछ गाड़िया रुकी हुई हैं एक फोर व्हीलर दिखाय दे रहा है आगे एक टू व्हीलर दिखाई दे रहा हैं।